बहुत सारे कुर्सी टेबल दिखाई दे रही है टेबल पर एक कप रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है।

यह एक बस दिखाई दे रही है बस में एक आदमी को समान लेकर चढ़ते हुए नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा पिंजरा दिखाई दे रहा है जिसमें चिड़िया दिखाई दे रही है दो डंडा दिखाई दे रहे है।

दो प्लास्टिक के डब्बे दिखाई दे रहे हैं जिस पे चिड़ियाॅं बैठी हुई है।

यह एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में कुवा सा दिखाई दे रहा है जिसमें पानी की--

समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है दरवाजे के पास में एक दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है एक अलमारी बनी हुई है जिसमें एक देवी जी की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं लड़की के खेलते हुए नजर आ रहे है।

बॉउंड्री के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है बाउंड्री के नीचे हल्की हल्की घास छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।